और सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

ऐसे की ठंडाई है किराने की शॉप है जिसके बाहर कुरकुरे और पेन टगें हुए हैं।

और बाहर मेहंदी पुष्पा और बहुत सारे कोलगेट के ब्रश टंग रहे हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसके अंदर चार्जर घड़ी वगैरा और स्पीकर्स रखे हुए हैं।

और एक पूल दिखाई दे रहा है जिसके नीचे गाड़ियां और--

यह एक रेलवे स्टेशन है जिसके पटरी के ऊपर एक रेल खड़ी है।

और एक टेबल पड़ी हुई है और अलमारी के अंदर पर्दा लगा हुआ है और पंखा चल रहा है।

यह एक शॉप है जिसके आगे एक ए_टी_एम का बोर्ड लगा है।

हैं और कार खड़ी है एक और आस पास में एक वृक्ष है जिसकी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

डांस प्रफोमेस कर रहीं हैं और आस पास में पेड़ दिखाई दे रहे है जिनकी पत्तियां भीं दिखाई दे रहीं हैं।